और उधर एक जंगल भी है पथरे भी है उधर पानी भी है आसमान भी नजर आ रहा है।

और आदमी औरत बच्चे लोग नजर आ रहे है इधर और फॅन भी नजर आ रहे है।

इधर फुटबॉल का गेंद खेल रहे है और पथरे दिख रहे है आसमान है।

चल के जा रहे है इधर एक ठप्री भी है आसमान भी है झाड़े भी है और कॉलेज की बिल्डिंग भी है।

दरवाज़ा भी है खिड़किया भी है लाइट भी है उधर मीटर भी नजर आ रहा है पाइप भी है और पायरी भी है।